यहां दो बसें भी दिख रहे हैं जो कि यलो और ब्लैक करके दिखाई दे रहे--

यहां एक और बॉक्स दिख रहा है जो कि ब्राउन और रेड करके दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ डस्टबिन दिख रहे हैं जो की अलग अलग रंगों के है।

यहां पर एक आदमी दिख रहा है जोकि येलो कलर का जर्सी पहना हुआ है और ब्लू कलर का लुंगी पहना हुआ है।

यह एक रूम का दृश्य है सामने में कुछ तस्वीरें वगैरा दिख रहे हैं।

जैसे कि लेस और ओयस कुछ केक वगैरह और काफी सारे चॉकलेट वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं।

एक बच्चे ने अपने सर पर क्लिप लगाया हुआ है वह बैंगनी कलर का है और पिंक कलर का और ब्लू कलर का है।

एक आदमी है जो ब्लैक कलर का जर्सी पहने हुआ है तथा ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है।

सामने एक पीले कलर का बोर्ड दिख रहा है यहां ब्लू कलर का एक जार भी नजर आ रहा है तथा दीवारों का रंग व्हाइट कलर का है।

सामने एक लोहे का कुछ बना हुआ है जो कि व्हाइट कलर का है।

पीछे में एक पेड़ दिख रहा है जो कि हरा और ब्राउन रंग का है।

यहां एक गोल्डन कलर का कुछ है जिस पर गोल्डन प्लस लिखा हुआ है।

पीछे एक टॉवल दिख रहा है जोकि रेड कलर का और पीछे कुछ लकड़ी का बना हुआ है।

कुछ हॉर्लिक्स के डब्बे भी दिख रहे हैं जिसका रंग आसमानी और येलो कलर का है।

यह एक कपड़े के शॉप का दृश्य है यहां पे अलग अलग रंग के कपड़े नजर आ रहे --

यह एक रूम का दृश्य है जहा पे दो बच्चे दिख रहे है दोनो अपना पेंटिंग को हाथ में लिया हुआ है।

बच्चे ने ब्लू कलर का जर्सी पहने हुआ है और पैजामा का रंग ब्लैक है।

यह एक दुकान का दृश्य है ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है जोकि रेड कलर का है उसपर पीले कलर से कुछ लिखा हुआ है।

यहां कुछ बल्टी दिख रहे हैं जो कि ब्लू ग्रीन और रेड करके दिखाई दे रहे हैं।